जहां पर खंडर बने हुए हैं यहां पर दो आदमी भी है।

जहां पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं।

यह एक बढ़िया सा पौधे का--

कुत्तों के लिए बेल्ट मिलती है और कुत्तों के खाने के और खिलौनो को--

बूटों को पानी दे रहीं हैं।

लोग अंदर बाहर देखने के लिए आ रहें हैं।

यह एक बड़ा सा रूम है।

जहाँ पे बहोत सारे बढ़िया बढ़िया पर्स और रंग बिरेंगे बैग मिलते हैं।

यह एक बड़ा सा स्कूल है।

इसको देखने के लिए दो एक नीचे और ऊपर आदमी है।

यह एक बहुत सुंदर सी मार्केट है।

जहां पर शिमला मिर्च टमाटर--

ये नदी का पानी ज साफ होता है।

दो डब्बे के ऊपर दो आदमी चढ़े हुए हैं।